इस तस्वीर में एक सफेद रंग का कमरा दिख रहा है जो कि एक कार्यालय जैसा दिख रहा है या अस्पताल जैसा दिख रहा है एक दरवाजा दिख रहा है कुछ कुर्सियां दिख रही है और आग बुझाने का यंत्र टंगा हुआ दिख रहा है। सभी दिवार--

इस तस्वीर में एक लोहे का दरवाजा दिखाई दे रहा है नीले रंग का ऊपर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर अंग्रेजी में एस.आर.ऐन हेल्थ क्लब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक जाली का द्वारा दिखाई दे रहा है जो आधा खुला हुआ है और एक कुत्ता लेटा हुआ है।